इस फोटो में कुछ आदमी दिखाए गए हैं।

एक आदमी और कुछ लैपटॉप रखे हुए हैं।

इस फोटो में कुछ पत्थर और पहाड़ी दिखाई गई है।

ऊपर एक रास्ता भी दिखाया गया--

इस फोटो में एक बोर्ड लगा हुआ है।

इसमें कुछ पाइप भी गड़े हुए हैं और कुछ लाइटे भी लगी हुई है।

इस फोटो में एक कॉलेज दिखाया गया --

उपर कुछ लाइटिंग भी पल रही हैं।

जिसके ऊपर एक पन्नी ढकी हुई है।

नीचे कुछ हरी हरी घास भी दिखाई गई हैं।

इस फोटो में एक गाड़ी दिखाई गई है।

और नीचे कुछ कैम्पर भी रखे हुए हैं।

और एक मीटर भी लगा हुआ है।